ये एक कैफे की फोटो है जहां पर कुर्सियां टेबल ब्लैक कलर की रखी हुई हैं और ब्लैक --

लड़कियां बच्चे औरतें खड़ी हुई है डांस के ड्रेस में--

जो कत्थरकली डांस करती है ये--

ये एक शादी पार्टी वाली जगा है जहां पर बहोत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का डेकोरेशन किया हुआ--

ये एक गार्डन की फोटो है जहां पर बहोत सारे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

सिंडिया का रोड करके लिखा हुआ है।

क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं ये व्हाईट कलर का--

ये कैनरा बैंक का फोटो है जहां ए_टी_एम और बैंक दोनों है।

ये एक जिम की फोटो है जहां पर--

यहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं फॉरच्यूनर --

ये एक कपड़े का शोरूम है जहाँ पर बहोत सारे गर्ल्स वियर के--

कपड़े में आदमी लोग खड़े हुए हैं और एक आदमी बैठकर ढोलक बजा रहा है।

चमनप्राश रखे हुए है और पतंजलि का चमनप्राश डाबर का चमनप्राश --

और सामने कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई है।

ये एक रूम की फोटो है जहां पर पीले कलर के सीमेंट की बोरियां बहुत सारी रखी हुई हैं।

ये एक मस्जिद की फोटो है जहां पर--

मुझे एक वाटर पार्क का फोटो लग रहा है जहां पर--

इंस्ट्रूमेंट है ढोलक गिटार एक येलो कलर का गिटार है और एक ब्ल्यू कलर का।

राज जेम्स एंड ज्वैलरीज़ शॉप है शाइन विथ गोल्ड --